इंडिया मे जैसे के राजिस्थान लेते है वहाँ बोहोत सारे कीले हैं।

पर वो लग रहा है अभी बंद है कुछ कारणवश वो बंद होगा और पीछे-पीछे घर दिख रहे हैं।

बगल में एक और बीज का दुकान है। कुछ बगल में बाइक्स लगी हुई हैं।

इसमें एक वाइट बोर्ड लगी है। एक ब्लैक बोर्ड लगी है और कुछ ब्रांचेस लगी हुए हैं और कुछ डेस्क लगी हैं।

और शायद शायद क्या यह रेलवे स्टेशन की सीढ़ियाँ। देख सकते हैं बगल में आप को टावर दिख रहा होगा जिसमें से रेल लाइन की वायर्स पास कर रही है। वहाँ के तार पास कर रही है।

यह पे बाइक लगी हुई है दो और इस घर में हमें दिख रही हैं दो खिड़कियाँ दिख रही है।

इनके पहनावा ओढावा से लग रहा है इन्होंने कल्चरल डांस किया है।